यहाँ पे देख सकते हैं हम यहाँ पे ये जो साड़ियां हैंइसे पटु साड़ी बोला जाता है और यहाँ पे जो कलरस हैं --

झूलो में झूल रहे हैं। कुछ बच्चे खड़े हुए हैं।